बहुत सारे लोग बैठें हुए है ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ विंडोज दिख रहे है फूलों की झाड़ दिख रही हैं छोटे - छोटे --